यह एक स्टेज का दृश्य है जहां पे लोहा की मदद लाइटे वाईटे लगे हुए हैं।

और यहां पे एक बच्ची का फोटो भी चिपकाया हुआ है जो हाथ में आइसक्रीम ली हुई है।

यहां पे लकड़ी का मदद से अलमारी बनाया हुआ है और अलमारी कलर लाल पीला ब्लैक है।

तथा एक आदमी का फोटो भी चिपकाया हुआ है और व्हाट्सएप अपने फोन गूगल पे और पेटीएम का फोटो चिपकाया हुआ है।

यहां पे एक ब्लैक कलर का गाड़ी लगा हुआ है।

जोकि लोहा और पटरा का मदद से बना हुआ है।

अतः एक रस्सी भी है जो जमीन पे गिरा हुआ है।

अतः यहां पे बहुत सारे मिट्टी भी दिख रहा है और सीमेंट भी दिख रहा है।

तथा यहां पे बाथरूम पेन भी है जो कि व्हाइट कलर का है और एक ब्राउन कलर के कोट में रखा हुआ है।

तथा यहां पर नल और बेसिन भी दिख रहा है।

और यहा बहोत सारे झरना और नल भी लगे हुए है।

और यहां पे एक बैनर पे कुछ लिखा हुआ है बंगाली में।

और वह सिर्फ लाल कलर का है उसके ऊपर जंजीर भी बांधा हुआ है।

और एक स्टेबलाइजर भी दिख रहा है तथा एक लाल कलर का गैस और चूल्हा भी दिख रहा है।

यह एक केदारनाथ धाम का दृश्य है यहां पे ब्लू कलर से लिखा हुआ केदारनाथ धाम यहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और स्टेज बनाया हुआ है।

यह एक रोड का दृश्य है जहाँ पे एक लाल कलर का सिलिंडर रखा हुआ है।